जिसकी जो फर्स वो हमारा होता है रूफ हमारी नहीं होती है और बहुत ही अच्छा फ्लैट होता है।

और उसमें वो स्विमिंग रेसिंग करते हैं।

ट्रैक्टर की जो बड़े बड़े मजबूत टायर है।

और ट्रैक्टर में ये पीछे इसलिए काम आते हैं कि जब ट्रैक्टर जब कहीं रेट में जमीन में जाता है तो ये जिसकी जो ग्रिप बनी है वो इसको आगे धकेलने के काम --

हम पच्चीस एक दो कर सकते हैं लेकिन इसमें हम कोई भी किताब किसी भी राइटर की पढ़ सकते।

औ काफी अच्छी कार है ए जो इसमे दूल्हा जो सुभो सुशोभित --

पता है मैच करके काफी अच्छा लगता है --

और ये फुटबॉल खेल होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक खेल होता है और खिलाड़ी भी ज्यादा --

और हम जो देख रहे हैं वह एक प्रेशर है।

इस तस्स्वीर में हम देख रहे है दो गधे हैं।

और हैं बर्फ़ी हैं केक हैं।

और इसके बाहर भी जो है एक बालकनी बनी और इसका जो डिजाइन है वो काफी यूनिक है काफी अलग है।

और लीछी जो इसका टेस्ट होता है वो सबसे अलग-अलग --

राइट पे जो अं रोड़ की सीमा है वो बड़ा दी जाती है।

एंट्रेंस गेट है और यहाँ से बॉक्स जो लगे हैं वो सर्चिंग बॉक्स है।

जोकि बहुत लम्बा होता है और राउंड शेप में ज्यादा होता है।

और इसमें जो है तट पर तीन बच्चे भाग रहे हैं एक आगे है एक पीछे है और एक तीसरे नंबर पर है जो पीछे वाले दोनों लोग के शर्ट का कलर ब्लू है पि पीला है।